और बहोत सारी विंडो भी यहां पे बनी हुई हैं चौकोर में ब्लैक कलर की।

आदमी यहां पे नजर आ रहे हैं चलते हुए।

और इसके छत पे कलर हुआ है वाइट कलर का।

और बड़े बड़े पेड़ भी यहां पे दिख रहे हैं।

जिसके ऊपर ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसमे दिल भी बना हुआ है।

और व्हाइट कलर की कार भी बहुत सारी खड़ी हैं और ब्लैक कलर की भी एक कार नजर आ रही है।

और चॉकलेट भी सामने की ओर लगी हुई है।

और इसके अंदर काफी एक मशीने नजर आ रही हैं।

और उसी के पास व्हाइट कलर की बहोत सारी कारें भी खड़ी है।

काउंटर के ऊपर डिब्बे में पैक हुआ कुछ समान खाने वाला रखा है।

इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां पेड़ की निकली हुई है हरी हरी।

और उसकी छत पे चौकोर में बहोत सारी लाइटे लगी है वाइट कलर की।

बाहर केवल एक लाल कलर का बड़ा सा बोर्ड लगा है।

और ऊपर वॉल एक स्पीकर लगा हुआ नजर आ रहा है।

एक आदमी बैग टांगे हुए भी है यहां पे--

सामने की ओर एक गेट बड़ा सा बना हुआ है औऱ उसी के उपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

साइड में स्विच बोर्ड भी लगे हुए हैं।

और जिसके नीचे एक रॉड भी लगी है नीली वाली।

इसके अंदर आगे की ओर घास नजर आ रही है।

औ उसी के ऊपर वल व्हाइट कलर का पत्थर भी लगा हुआ है।

कई लोगों के सर भी नजर आ रहे हैं इसके अंदर।

बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर।

और टेबल के बाद कुर्सियां भी बहुत सारी यहां पे हैं।

एक गमला भी रखा हुआ है पीछे की ओर।

बहोत सारे बच्चे भी यहां पे बैठे हुए हैं।

और ऊपर लाल कलर वाली कालीन बिछि है।

उसी के ऊपर कुछ रखा भी है जिसके ऊपर पेपर फसा हुआ है।

अ हाथ में एक माइक लिए हुए है और एक ब्लैक कलर का स्पीकर रखा हुआ है और कुर्सी भी रखी है वाइट --

आग बुझाने वाले एक लाल कलर का सिलेंडर है।